वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे है नीचे बहुत सारे घास-घास या आजू बाजू लोग भी नज़र आ रहे है।

यह एक बहुत बड़ा समंदर एक मंदिर भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ घासें उग रही है। यहाँ पर कुछ जीने भी बने हुए है।